घाँस के सामने दो तीन पेड़ और है ये जिसकी डंडी आएगी ग्रे कलर की सुख जाते है पेड़ उसकी डंडी आएगी ग्रे कलर की और पीते से लगी हुए क--

थर हैं वो भी ब्राउन कलर का है उसके बाजू में एक छोटा सा पेड़ हैगा और गुच्छे जैसा हैगा और घांस भी दिख रही--

पेड़ दिख रहा है बड़ा सा मैदान में एक आदमी दिख रहा है जो भागता हुआ एक कार भी दिख रही है।

अच्छा है लोग आएगे खड़े --

वाइट कलर से कुछ लिखा होगा ए.टी.एम सी.ऊ.बी भी लिखाया--

नीचे बोर्ड्स लिखा है तमिल ड्री.ड्री.डी लिखा होंगा।